यह एक खुला हुआ छोटा सा मैदान है जो की एक घर के सामने है।

इस मैदान में एक कुत्ता लेटा है और दो तीन बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

दाएं साइड में एक पंचिंग बैग भी है।

यहां पे बहुत सारे मंदिर हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े गुंबज लगे हुए हैं।

यह कोई तालाब है जिसके ऊपर बहुत सारी घास जमी हुई है।

यह किसी घिरी हुई जगह का बाहरी इलाका है।

सामने एक एंबुलेंस खड़ी है जिसके ऊपर दुर्घटना से देर भली लिखा हुआ है।

ये एक स्कूल के वॉकिंग एरिया की तरह लग रहा है।

यहां पे कई सारे कागज से बने हुए खिलौने रखे हैं जो की एक नीले रंग के कपड़े के ऊपर रखे हैं।

आस पास कई सारे बच्चे खड़े है जो कि वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं।

हॉल में सीलिंग के ऊपर बहुत सारी बत्तियां जल रही हैं।

बगल में कुछ और दुकानें भी हैं।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

बाहर साइड में टेबल पे एक हैंड वॉश रखा हुआ है।

एक लाल रंग की डस्टबिन रखी है।

और टेबल और कुर्सियां रखी हैं बैठने के लिए।

यह एक इमारत है जिसके ऊपर आदित्य भवन लिखा हुआ है।

इसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ है जिसके ऊपर दी इंडियन बुक डिपो लिखा है।

अंदर दीवाल के ऊपर एक सफेद रंग का टेबल फैन भी लगा हुआ है।

यह एक मंडप है यहां ढेर सारे फूलों के साथ सजावट की गई है।

उसने अपने हाथ में कोई सोने की अंगूठी पहनी है।

ये एक बहुत ही सुंदर सा घर है।

बगल में कोई वायर है।

नाव पे सवार होके जा रहे हैं।

नाव में कुछ चीजें भी रखी हैं।

यह किसी कॉलेज का आप्थाल्मालॉजी डिपार्टमेंट है जो की साउथ विंग में है।

इसके पीछे बड़ी मात्रा में कई और फूल रखे है जो कि पीले और लाल रंग के है।

बाएं साइड में कुछ बड़े बड़े डब्बो में बड़े बड़े खिलौने भी रखे हुए हैं।

यहां पे एक आदमी अपना कोई काम कर रहा है।

यह जगह काफी सजी हुई है और यहां एक क्रॉस बना है।

ये कोई जगह है जहां काफी सारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं।

पत्तियां थोड़ी थोड़ी सफेद भी हैं।

यह कोई छोटा सा रूम है जिसके बाए साइड की दीवाल नीले रंग से रंगी गई है।

इस दुकानों का नाम है पिज्जा हट पाव भाजी और ट्विस्टेड ।

बड़ी सी गाड़ी है जिसमें से सामान उतारा जा रहा है।

दूसरे साइड के प्लेटफार्म पे कुछ लोग खड़े हुए हैं।